खड़ा है व्यक्ति दिख रहा अ उसका कलर ब्लैक दिख रहा आसमान का कलर सफेद है सामने इमारत है जीसका कलर सफेद है।

फर्श का कलर भूरा है आसमान का सफेद व नीला है पेड़ का कलर हरा है रेलिंग का कलर सफे अ काला है सामने एक --

बैनर का कलर नीला है का कलर हरा है दीवार का कलर लाल है स्वास्तिक का कलर ऑरेंज है।

फर्श का कलर स्लेटी है अं सोफे कलर लाल और सफेद है बेंच का कलर काला है।

लड़की की जूतों का कलर सफेद है गैस का कलर लाल है पानी के टैंक का कलर नीला है आसमान का कलर स --

फर्श का कलर्स स्लेटी है इमेज का कलर ब्राउन और सफेद सफेद दीवार का कलर पीला का कलर सफेद --

ऑफिस का कलर पीला और गोरा है पेड़ का कलर हरा है बिल्डिंग के ऊपर कलर सफेद है।

फूल का कलर पीला है माता के कपड़ों का कलर पीला है कालीन का कलर लाल है।

सेल्फ का कलर भूरा और सफेद लिखा हुआ उसका कलर सफेद और सामने --

कपड़ों का कलर लाल फूलों का कलर लाल जामुनी हरा पीला है का --

फर्श का कलर सलेटी है तार का कलर काला है आसमान का कलर सफेद है।

दीवार का कलर स्लेटी व्यक्ति कपड़ों का कलर काला व स्लेटी महिला कपड़ों का कलर --